जो की सफेद एवं लाल कलर से पोता हुआ है इस बैंक का बैनर ब्लू कलर से पोता हुआ है।

ये चित्र एक शोरूम का दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर सुख दियो पैलेस लिखा हुआ है।

साइड में दो ब्लैक कलर की बाइके दिखाई दे रही है।

ये चित्र एक छोटे ढाबे का दिखाई दे रहा है।

जहां पे दूध और दूध से बने बहोत से आइटम खाने पीने के व्यंजन दिखाई दिखाई दे रहे हैं।

पास में एक छोटी बाल्टी रखी हुई दिखाई दे रही है बाहर एक दूध का बड़ा बैनर लग--

ये चित्र एक स्टेज का है यहां पे शादी समारोह चल रहा है स्टेज --

टेंट से सजा हुआ है बड़ा सारा ये स्टेज है।

ये लाल कलर की दुकान है यहां पर ओमनी स्टील लिखा है। बाहर एक भारत का नक्शा जैसा कुछ बैनर लगा हैं।

बड़े सारे लाल और सफेद झंडे दिखाई दे रहे हैं।

पत्थर से हस्तशिल्प करी हुई चार छे चीज़ें दिखाई दे रही है।

पीला एवं नीला दिखाई दे रहा है ये बड़े सारे मिट्टू है ये किसी चीज पे बैठे नजर आ रहे हैं यह नेट के अंदर पिंजरे में बंद है।

पानी पीने के आइटम जैसे बिस्किट चिप्स दूध--

यहां पे तीन अलग अलग गेट दिखाई दे रहे हैं तीनों गेट में कांच दिखाई दे रहा है।

जो बिल्डिंग ऑरेंज अथवा क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।

ये चित्र एक सब्जी के ठेले का दिखाई दे रहा है ठेले के ऊपर काफी सारे टमाटर हैं।